यहाँ पर आपलोग देख सकते है --

यहाँ पर आपलोग देख सकते हैं।

ये यहाँ पर काफी सारी जिम में --

ये काफी सारी बड़ी-बड़ी दुकाने दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ ये एक जिम की फोटो है जहाँ पर की --